ये टोटो के आगे बिल्डिंग है ये टोटो एक ग्राउंड में खड़ी हैं।

होंडा शोरूम का पोस्टर भी लगा हुआ है बगल में एक रोड हैं।

यह एक कार शोरूम है जहां पर कार लगा हुआ है कार का बोनेट खुला हुआ है कुछ काम हो रहा है कार के अगल बगल दो चक्के पड़े हुए है।

कार के नीचे बिछाया हुआ है।

एंड ओ फिस रखा हुआ है जिसमें वह कार्पेट भी बिछा हुआ है।

एड टावर के बगल में एक बिल्डिंग है एड टीना का स्टेज है।

यहां पे बहुत सारे व्यक्ति है कार भी है एंड ये --

पोस्टर भी लगे हुए है एंड थाली पे कुछ नूडल्स भी है ग्लास भी हैं।

आगे कुछ और गिलास भी है दो चेयर है एक टेबुल है।

हैंड और भी चेयर है और भी टेबुल है।

एक ग्राउंड है ग्राउंड में घास है घास टाटा स्टील --

वो स्कूल का प्रोग्राम है डी. डब्लू . आर. एल. डी स्कूल का नाम है यहां कुछ बच्चे सफेद कपड़े मैं है कुछ बच्चे--

आर्मी ड्रेस में है ये बच्चे।